जैसे की हम यहां पे देख पा रहे है यहां पे एक दुकान है दुकान आप देख सकते है काफी बड़ी सारी है और यहां पे बहुत सारी --

आप खुद देख सकते हैं बहुत ही पुराने टाइप का लग रहा है घंटी हमें यहां पे दिख रही है कुछ यहां पर सीढ़ियां बनाई गई है देख सकते हैं आप।

यहां हम देख पा रहे हैं यहां पे आप देख सकते हैं।

दोनों साइड यहां पे गार्डन है यहां पे इंट्री गेट देख सकते है बंद है उसके ऊपर एक बिल्डिंग यहां पे हमें दिखाई दे रही है।

घर आप दे सकते है काफी पुराना सा लग रहा है पेंट इसका पुराना हो गया है इसके बाहर एक बड़ा सारा पेड़ है जो हमें यह देखने को मिल रहा है।

अलग अलग यहाँ पे खिलोने हैं जैसे बच्चों की बाइक है बहोत ही प्यारे प्यारे खिलौने हैं यहाँ पे।

यहां हम देख सकते हैं यहां पे एक शोरूम है और यहां पे आप देख सकते है फोर व्हीलर रिपेयर की जाती है।

यहां पे छोटे-छोटे से बच्चे हैं और ये मोमडन बच्चे हैं लड़कों ने यहां पे कैप लगाई है तो लड़कियों ने सिर पर वो ढक रखा है।

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं यहां पे कुछ कच्ची पक्की सी जगह है कुछ यहां पर झूले दिखाई दे रहे हैं और यहां पे छोटे छोटे से --

जैसा कि हम यहां पे देख पा रहे हैं हमें यहां पर बड़ी-बड़ी मोटी-मोटी सी मछलियां दिखाई दे रही हैं और ये बहुत ही सारी है देख सकते हैं आप यहां पे --

यह हम देख पा रहे हैं यहां पे एक स्टेज सजा हुआ है स्टेज पे आप देख सकते हैं काफी छोटी-छोटी सी लड़कियां बैठी है।

और यहां बड़े बड़े पेड़ हम देख पा रहे हैं एक बड़ा सारा पाइप है आसपास कुछ घर हैं।

बहुत सारी पब्लिक यहां पे आई हुई है देख सकते हैं जो भगवान के आगे खड़े हैं।

पटरी के पास कुछ यहां पे एक लेडीस है और एक बच्चा है।

और यहां पे और लॉक लग रहा है गेट के एक पेड़ यहां पे है कच्चा पक्का सा ये आसपास पहाड़ी है।

यहां हम देख सकते है यहां पे स्मार्ट बाजार है स्मार्ट बाजार में आप देख सकते है काफी सारी चीजे हमें दिखाई गई है अलग अलग तरह की --

लोशन फेस वाश साबुन कोलगेट देख सकते हैं और ये सब चीजें यहां पे डिस्काउंट पे मिलती हैं।